यह मूर्तियों की तस्वीर है सायद जिस चीज की मूर्तियां हैं वो हमें समझ नहीं आ रही है की यह किस चीज की मूर्तियां बनाई गई हैं इसकी बनावट बोहोत सुन्दर लग रही है।

शायद मूर्तियाँ ही है साफ़-साफ़ नहीं दिख रही है की मूर्तियाँ है या क्या है शायद मूर्तियाँ ही है किसी चीज़ से बनायीं गयी है।

यहाँ सामने लिखा हुआ है जो शायद इंग्लिश मे लिखा है जो हम नहीं पढ़ सकते ऊपर एक जाली भी दिख रही है नीचे कि टाइल्स काली ओर सफेद दिख रही है।

लाल भी है नीला भी है हरा भी है और केसरिया रंग भी है इसकी बनावट बहुत सुन्दर लग रही है ऊपर सीढियाँ भी लगी हुई है ।

यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई हैजो सरस्वती माता कि लग रही है पीछे एक बोर्ड टंगा हुआ है उस पर कुछ लिखा है समझ नहीं आ रहा है कि--

यहाँ पर अंदर कुछ होता है जो भी होता हो यहाँ सबूरी एमपोरोरियम लिखा हुआ है यहाँ पर शीशे से--

यहाँ पर पेंटिंग कि जाती वो भी बहुत सारी पेंटिंगे है कुछ चौकोर आकार कि कुछ गोलाकार कि जो टंगी हुई है।